आसमान दिख रहा है आ पौधे दिख रहे है दो पास में आ बड़ा बड़ा जो पौधे है धूप के अंदर --

आ लाईक आ ब्लू अ देन --

यहां पर एक अ पिक्चर है एक मॉडल का वहां पर एक जन शा --